घर के पीछे साइड कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ बाइक यहाँ पर खड़ी दिख रही है और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए है।

और कुछ मकाने यहाँ पर दिख रहे है कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है और कुछ खम्भे दिख रहे है।

यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मैदान दिख रहा है मैदान के अंदर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ गेट भी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

आस-पास में पेड़ लगे है उनपर फूल लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ दिख रहा है स्टेज डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा है स्टेज के ऊपर एक सोफा रखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे रेक दिखाइ दे रही है रेक के अंदर मुझे बहुत सारा समान रखा है हार्पिक तेल कुछ साबुन रखे है।

और दो मैडम खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ खिड़किया लगी हुई दिखाई दे रही है।